ये एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में चेयर और टेबल रखी हुई हैं बहुत सारी एक चेयर टेबल पे दो आदमी बैठे हुए हैं जो की कोल्ड ड्रिंक पी रहें हैं उ ऊपर बहुत अच्छी लाइट से डेकोरेशन किया गया है इस रेस्टोरेंट का --

ये समुन्द्र है समुन्द्र के आस-पास बौंड़री खिचीं हुई हैं और बहुत ही ब्लू ब्लू डार्क ब्लू कलर का पानी है बहुत खूबसूरत पानी दिख रहा है।

ये एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पर बहोत सारे बहोत ही सारी कलर की चेरस और टेबल रखी हुई है और शेड डाले हैं और बहोत सारे फेनस नजर आ रहे हैं।

ये एक पेट्रोल टैंक है जिसमें लाइटिंग दिखाई दे रहीं है बहुत ज्यादा लाइट्स लगी हुई हैं दो आदमी खड़े हुए हैं जो आपस में बात कर रहें हैं।

के आलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा है पुरे में सुना पड़ा हुआ है।

ये एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है चैंपियन की तस्वीर भी लगी हुई है।

और ये कार का नंबर है यू.पी. सिक्स फाइव डबल बी सेवन थ्री नाइन थ्री ।

ये एक सैलून की इमेज है सैलून में दो चेयर रखी हुई हैं ब्राउन कलर की बहुत क्लीन पड़ा हुआ है सैलून बहुत क्लीन एंड नीट है सामने मिरर लगे हुए हैं मिरर के आसपास वाइट कलर की लाइट लगी हुई है।